ये एक ये एक बहुत बड़ा रूम है और इसमें ए भगवान जी का फोटो है और दो चार आदमी है| एक टेबल है दो कुर्सी है। दो कुर्सी में दो आदमी बैठे हुए हैं एक महिला बैठी हुई है।

ये एक जिम हॉल है जिसमें तरह- तरह के एक्सरसाइज करने का सामान है। एक लड़का बैठा हुआ है। उसके पीछे में भी एक लड़का बैठा हुआ है। इसका गले का हर--

का रंग जो है वो ये रेड है और एक आदमी एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई फोटो ले रहा है एक दुसरे से बाते कर रहे हैं। पीछे में बहुत सारे आदमी हैं।

चार चक्का नजर आ रहा है टेम्पो नजर आ रहा है। उसके बाद पोस्टर लगे हुए हैं। बच्चे खड़े हैं बाजु में। काफी तेज धुप है। पीछे में एक बस है। पीछे में बिल्डिंग नजर आ रही है बच्चे खा रहा है एक बच्चे बात कर --

और बहुत सारे बहुत सारे गुब्बारें हैं। दो-एक लड़का बैठा हुआ है। उसका टोपी का कलर पिंक है और चप्पल पहने हुए --

और अ मछली को नजर आ रहा है इच्चा मछली और उसके बाद रो रेहू वगेरा मछली भी नजर आ रहे हैं।

यहां छठ पूजा होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे महिलाएं खड़ी हैं। रंग-बिरंगी कपड़े पहने हैं कई रेड कलर का पहना हुआ है। उसके पीछे में एक बहुत बड़ा-सा झील है। इसमें हरे हरे-भरे जंगल भरे हुए हैं और पानी भी बहुत गहरा है।

इसके बाद एक ठो कपड़ा से जता हुआ है। इसके बाद दो बोतलें नजर आ रही है और जीना भी है इसमें अच्छा है।